और एक छोटी और मोटी होती है। मानो तो यह की तरह लग काका मंदिर है। ठीक --

विद्या भारती बुक डिपो सेन्टर है। जिस पर ऐ हॉउस ऑफ चिल्ड्रन एन.सी.आर.टी एण्ड सी.बी.एस.ई बुक --